ये नज़ारा एक समुन्द्र के किनारे का है। यहाँ पे बड़े-बड़े नाव जहाज जिसे बोलते है हम पानी का जहाज --

हिन्दू धार्मिक मंदिर है और यहाँ पे भक्त वगेरा दर्शन करने के लिए आते है।

का आनंद लेते है। और --

जैसे शहरों में देखने को मिलते हैं।

लगाई जाती है। बच्चों को डांस करना सिखाते है।

ये रामलीला वगैरा में और नौ देवियों में --

ब्लीच वगेरह भी यहाँ से करवाते हैं।